कितना अच्छा इसका व्यू लग रहा है। देखने में बहुत ही प्यार व्यू नजर आ रहा है।

पिक्चर में हम देख प् रहे हैं की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यहाँ पर देखिये कुछ --

देखिये यहाँ पर लेडीज कलेक्शन है यहाँ पर बहुत सारी लेडीज सूट --

और कुछ पैरट व्हाइट एण्ड ब्लैक हैं जो की बहुत प्यारे नजर आ रहे हैं।